बाहर में एक बाइक भी रखा हुआ है और दो स्टेच्यूस भी बनाए हुए हैं।

एक का हाथ टूटा हुआ है।

इस चित्र में हमें बहुत बड़े बड़े हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है और नीला रंग का एक पोस्टर लगा हुआ है और काले रंग का गेट भी है।

इस चित्र के अंदर हमें एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र पे हमें एक बहुत बड़ा सुंदर सफेद रंग का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

उसके बीच में मिट्टी रंग का बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है।

वो इंसाने दिखाई दे रहा है।

उनके पीछे हमें बहुत सारे छोटे और बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

साइड में हमें बहुत बरा सा पेर दिखाई दे रहा है।

उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है।

चित्र के अंदर हमें दो इंसाने दिखाई दे रहा है जो झारू बना रहे हैं।

चित्र में हमें बहोत सारे छोटे बड़े गमले में पौधा रखे हुए दिखाई दे रहा है।

इ चित्र के अंदर हमें एक बिल्डिंग दिखाया गया हैजो सफेद और लाल रंग का है।

और कुछ पूजे के सामाग्री दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में हमें बहुत सारे बोड़िया और बक्से दिखाई दे रहा है।

चित्र में हमें एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

उन चियरो में कुछ सफेद रंग का सामान रखा हुआ है।

चित्र में हमें एक बाइक और एक स्कूटी दिखाया गया है।

और बहोत सारे पौधे भी लगे हुए हैं।

दूसरे कोने में एक गौतम बुद्धा का स्टेच्यू रखा हुआ है।

इ चित्र में हमें एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

झील सामने ही एक हरा रंग का बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है जो झील के नीचे झूलता हुआ नजर आ रहा है।

नाइट में हरा पीला रंग का सीढ़ी भी है और एक सफेद पीला लाल रंग का स्लाइड भी बना हुआ है।